इसु मसीह का पुतला भी बनाया हुआ है ऊपर देख सकते है काफी लोग अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं कैंडल जला रहे हैं।

काफी सारी लड़ियाँ लगी हुई नीले कलर से सजाया हुआ है पेड़ भी है लाइटें चारों तरफ हैं देख सकते है हरा कलर का --

हरे हरे पेड़ हैं बड़े से बाइक में कुछ लोग सवार हैं कुछ लोग आ रहें हैं।

कुछ लाइटिंग की खम्बे भी हैं यह रिपेयर में है ।